और उसके बगल में बहुत सारे घर भी हैं।

यहाँ पे दो नाव खड़ी है जिसमें एक नाव में --

क्लास टेन तक क्लास सिक्स से क्लास टेन --

यहाँ पे शादी हो रहा है और यहाँ पे बुफे सीस --

ये लाल कपड़ा पहन के टोपी वेगा पहन के--

ये एक ट्रेन का पटरी है जो कि बहुत बड़ा उसके बगल में एक और पटरी बनने जा रहा है।

ये एक यामाहा का शोरूम है जहाँ पे आर वन फाइव वी थ्री --

यहाँ पे फंक्शन चल रहा है जो कि शादी का है। यहाँ पे दो बॉडीगार्ड --

और अ उस से भी बड़ा एक बहुत बड़ा पहा-पहाड़।

ई नाथ पब्लिक स्कूल है जो कि बहुत बड़ा है।

दुकान है लखीसराय का सबसे बड़ा दुकान यही है।

और इस मंदिर का एक खासियत है जो कि --

यह मंदिर है लखीसराय का जो कि बहुत बड़ा है और एक --

और ये लखीसराए का बहुत बड़ा बाईपास है।

ये होटल कृष्णा है जो कि पांच महल का है और इसमें बहुत सारे रूम हैं।

ये एक बस स्टैंड है। जो कि बहुत बड़ा बस स्टैंड है और इसके बगल में इर्द-गिर्द --